ये सैलून सैलून नजर आ रहा है ये सैलून काफी अच्छा सुंदर लग रहा है इस सैलून के चारो ओर सीसे लगे हुए हैं।